हैं और बिल्डिंग लगी हुई हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं जो कि ब्लू कलर की शर्ट पहने हैं।

उपर टीन अ टीन की छत हैं।

जिसमे तीन लोग बाहर खड़े हुए हैं एक रेड कलर की कार खड़ी हुई हैं एक बाइक खड़ी हुई हैं।

और सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है। पिंक कलर की स्लाइडिंग है।

और ब्रिज है ब्रिज के निचे जो पानी है आसमान दिख रहा है नीला ।

एक डाकू टाइप का ब्लू वाइट कलर का दिख रहा है।